यह दृश्य में कुछ सिल्वर कलर के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

चौक से दिखा लग रहा हैं पीछे एक आदमी खड़ा हैं उसके साइड ही--

और पड़े हैं कुछ पाइप साइड में स्टील की खड़े हैं कुछ पाइप --

पर हैं वो साइड में से गोल गोल है बीच में उसके छोटा सा होल भी है।

सारे आदमी बैठकर मैच देख रहे हैं।

पड़ें हैं बॉक्स को ऊपर से बंद--

बड़े बड़े पेड़ ब्लैक कलर के यहां लगाए गए हैं।

इसका अह गेट मिरर का लगा है और यह गेट ओपन है।

यह एक मनिहारी की शॉप है मनिहारी के शॉप पर--

कई कलर्स के कार खड़े हैं।